योगा करते हुए नजर आ रहे हैं।

और ऊपर नीला नीला आसमान भी नजर आ रहा है।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर घंटाघर दिखाई दे रहा है।

इस में देखिएगा यहां पर एक प्ले ग्राउंड नजर आ रहा है।

ऊपर बड़ा सा ब्रिज भी नजर आ रहा है और आसमान में बादल दिखाई दे रहे हैं।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

यहां पर कुछ लोग अपना सामान खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं।

स्टेज के ऊपर कुछ लड़के और लड़कियां डांस करते दिखाई दे रहे हैं।

इस इमेज में देखिएगा यहां पे सामने एक बड़ी सी मस्जिद दिखाई दे रही है जिसके कई सारे खिड़की और दरवाजे नजर आ रहे हैं।

यहां पर देखिएगा कई सारे खूबसूरत लाइटे जलती हुई--